इस चित्र में एक आदमी काउंटर पर पेपर पर कुछ लिख रहा है।

और काउंटर पर रखा मोबाइल और झंडा और इसके ठीक पीछे दीवारों पर कैलेंडर्स लगे हुए हैं।

यह शोरूम एक ट्रेंड्स शोरूम --

और इसमें तीन मशीन रखी हुई है।

और इसके अंदर भगवान की मूर्ति रखी हुई है।